एकरेलवे स्टेशन है यहां पर एक ट्रेन खड़ी हुई है प्लेटफार्म बना हुआ है यहां पर दो प्लेटफार्म बनेंगी हैगे

यहां पर एक रोड है का और रोड के किनारे पर थोड़ा सा ग्राउंड आएगा काफी बड़ा सा हैयहां पर साइड मॆ कुछ पेड़ पौधे लागि हुई है हैगे ग्राउंड मॆ वहत सारी गढ़ी है खाङि हुई है हैगे।

उसे गली में एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है यह बिल्डिंग व्हाइट कलर की है और पेट्रोल पंप के आसपास कुछ पेड़ लगे हुए हैं पेट्रोल पंप में काफी सारी गाड़ी खड़ी हुई है ।